जैसा की मै देख पा रही हु मुझे यहाँ पर एक मूर्ति दिखाई दे रही जिसका रंग पीला लाल और हरा है इस्पे सफेद रंग की टोपी लगी हुई है जमीन का रंग भूरा है यहाँ पर एक--

जाली लगी हुई जो काले रंग की है ऊपर टीन का शेड है जो स्लेटी और काले रंग का है पीछे एक बैनर लगा है जिस पर नीले रंग से कुछ लिखा है।

जैसा की मै देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक मेज दिखाई दे रही हैं जो स्लेटी रंग की है यहाँ पे बच्चे क्राफ्टिंग कर रहै हैं जिसपर उनका क्राफ्टिंग का सामान रखा हुआ है यहाँ पर चार्ट पेपर है जो--

जैसे की में देख पा रही हूँ की मुझे यहाँ पर एक ईमारत दिखाई दे रही है जिस पर बैनर लगा हुआ है एक क्रीम नीले रंग का जिसपे सफ़ेद रंग से एटीएम लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारी स्कूटीयाँ --

जैसा की में देख पा रही हूँ मुझे एक बहोत बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है यहाँ पे लोगो ने सफ़ेद रंग कपडे पेहन रखे है।

जमीन पर बच्चो के बस्ते रखे है जो लाल काले हरे है।

पिले रंग की कमीज तथा ग्रे कलर की पेंट पेहनी उसके पैरों में नीले रंग की चप्पल --

ओ खा पीले रंग के कपडे और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए है एक लड़की ने लाल काले रंग के कपड़े पहने हुए है।

ईमारत दिखाई दे रही है जिसका रंग सफ़ेद होता है एक बोर्ड लगा है जिसपे काला रंग से दैनिक जागरण लिखा हुआ है पीछे बड़े - बड़े हरे - हरे पेड़ भी लगे है।

छोटा का दुकान बनी हुई है छोटा का रंग नीला हरा है एक बैनर लगा हुआ है जो हरे रंग का है कुछ हेलमेट भी लगे जो काले रंग के है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर एक चट्टान दिखाई दे रही है जिसे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है पानी का रंग सफ़ेद है यहाँ पर पानी भरा हुआ है जो भूरे रंग --

जैसा की मै देख पा रही हूँ मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगो की भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पर यह एक स्टेट बैंक है जहाँ पर लोग खड़े हुए हैं यहाँ--

यहाँ पर सफ़ेद रंग से एम. पी. लिखा हुआ है बच्चो के हाथ में एक झंडा है जो भारत का है इसका रंग नारंगी सफ़ेद और हरा है।